पहाड़ स्लेटी कलर का है जोकि बहुत खूबसूरत लग रहा है।

एक आदमी सिखा रहा है और सारे लोग सीख रहे हैं।

जो कि बहुत बड़ी है। इसके ऊपर पुल है और उसके पुल के पास बहुत बड़ा टावर है और इधर स्टीमर भी खड़ी --